एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रहा है जिसका की निर्माण कार्य अभी चल रहा है सामने कुछ बल्लियां लगी हुई है नीचे कुछ लकड़ियां डली हुई है और सामने एक लकड़ी की टेबल रखी हुई है किनारे तरफ एक काम्प्लेक्स दिख रहा है।

पीछे तरफ एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है जो शायद मस्जिद है जिसमें काफी सारी लाइट जल रही हैं और ऊपर चांद की आकृति बनी हुई है।

यहाँ पत्थरों का एक प्राचीन सा किला दिखाई दे रहा है जिसमें अंदर काफी सारे खंड बने हुए हैं ऊपर तरफ एक फैन लगा हुआ है और सामने तरफ एक खिड़की बनी हुई है जिसमें अंदर से बाहर से काफी उजाला अंदर आ रहा है।